बीच में एक टी_वी स्क्रीन नजर आ रहा है।

मुझे बहुत सारी कुर्सियां भी दिख रही है घर का छत टीना से बना हुआ है।

इस फोटो में मुझे कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है।

मैनीक्यूएंस पर फैंसी ड्रेस प्रदर्शित है दुकान में अलग अलग प्रकार के कपड़े लटके हुए हैं।

घर की दीवारों पर कुछ पेंटिंग बनी हुई है।

इस तस्वीर में ग्रामीण या आदिवासी शैली के कुछ झोपड़ी दिखाई दे रहा है।

कई तरह की ताजी मछलियां बिक रही हैं।

रुम में काफी सारे उलेन सोफ़ा और सेंटर टेबल से पीछे बड़ी खिड़कियां है जिनमें कर्टेन्स लगे हैं और सीलिंग पर फैन्स और लाइट लगें हुए है।

रूम का एनवायरनमेंट शांत और फॉर्मल लग रहा है।

सामने छोटा सा मूर्ति को है और काले रंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक स्टेशनरी शॉप है जहां एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है।

साफ़ नीला आसमान और दूर पहाड़िया दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में सफेद पेंट की वॉल से और कुछ ब्राउन ब्रेड डिटेलिंग है।

सामने के वरंदा में एक सफेद प्लास्टिक चेयर रखी है।

जिसके पास सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा है।

सेल्फ पर नोटबुक्स पेन वॉटर बॉटल्स और कई तरह के स्टेशनरी आइटम्स अच्छे से सजाए गए हैं।

दुकान में समान बहोत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है।

बकरियां मिट्टी के मैदान पर है और कुछ चारा खा रहे हैं।

बाएं तरफ कुछ गमले में पौधे रखे हैं।

पीछे दुकान दुकाने हैं और मकान है शाम का समय लगता है।

और वो लोग उसे ट्रक पर उठा रहे हैं।

इस फोटो में मुझे अलग अलग रंग के कुछ वस्तु दिखाई दे रहे हैं जो की दिखने में बहोत सुंदर हैं।